यहाँ पर भी कुछ मकान है जो कि मकान बना रहा जो कि ढलाई हो रहा। कहाँ ढलाई हो रहा शेटरिंग वेटिंग लगा के आदमी सुक लगा रहा है जो कि यहाँ बन रहा है। ढलाई हो रहा है इधर भी काम चल रहा --

तो काफी अच्छा तरीका से यहाँ काम किया जाता है जो कि काफी शानदार जगह है ऊपर से भी चिनवा दिया गया है जो कि काफी शानदार जगह काफी मस्त जगह है जो कि काफी अच्छा जगह है।